हमे यहा पर एक एरोप्लेन दिखाई दे रहे है। एरोप्लेन जो है वो सफ़ेद रंग का दिखाई दे रहा है। उसके बगल मे एक लाल रंग की कुछ खड़ी हुई है। और कुछ व्यक्ति भी दिखाई दे रहे।

हमे यहा पे एक मशीन रखी रखी हुई नजर आ रही जिसमे कुछ डिजिट चल रहे है और ग्रीन कलर ब्लॅक कलर और रेड लाइट दिख रही है उसपे और यहा पे कुछ मशीन रखी हुई है दीवार को सफ़ेद रंग से पेंट किया गया है।

कुछ लोग दिखाई दे रहे है एक चेयर रखी हुई है इसको नीले और सफ़ेद रंग से पेंट की गया है।